और यहाँ पे ऑटो खड़े हैं और कारे भी हैं। खूब ऊँचे पेड़ हैं।

तस्वीर मै देख रहे हैं। ये तस्वीर एक रेस्टोरेंट की है और ये काफ़ी ख़ुबसूरत देखने मै रेस्टोरेंट है।

हम इस तस्वीर मै देख रहे हैं। यहाँ पर एक भैस खड़ी है और यहाँ एक लेडी खड़ी है और ये --

चौडी सीढ़ियाँ हैं और --

यहाँ एक साईकल खड़ी है। सायद ये बस अड्डा है और पिनचरों की दुकान भी है और --